यहां पर बहुत सुंदर-सुंदर कुर्सियां भी रखी हुई है। डेकोरेशन भी बहुत सुंदर हुआ है लाइटें भी बहुत सुंदर है और गणेश जी की पोस्टर भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।

बैलून्स के कलर है ओरेंज और ब्लू मे यहाँं पर कुछ बच्चे डांस भी कर रहे है और यहाँं पर बच्चे माक्स भी लगाए हुए है और पीछे स्टूल भी रखे हुए --